आजूबाजू हरी-हरी घास है ऊपर विशाल हरे पेड़ है आसमान है।

ए.सी है ऊपर लाइट है एक वाल फ़ैन है पीलर है।

यहा बहुत बड़ी जगह है लाल कलर के लाइनिंग पट्टे बने है। कुछ ऑरेंज कलर के कोण रखे है एक हवाई जहाज है।

यह एक ब्रिज है। ब्रिज पर रोड है। एक लड़का साइकिल लेके खड़ा है। ऊपर नीला आसमान है। कई बादल है।

एक साइकल पे एक साइकल चलाले वाला इन्सान जा रहा है।

एक लड़का कटिंग करने बैठा है उसके बाल एक इंसान काट रहा है उसके हाथ मे कैची है उसके हाथ मे कंगी है वो लड़का एक चेयर पे बैठा है।